और यह महान पुरुषों को देखने के लिए बहुत आदमी दूर-दूर से इसे देखने के लिए आता है और बहुत आदमी इसे पूजे भी कर --